ये एक बड़ा गेट लगा हुआ है और एक औरत खड़ी है उसके गोदी में बच्चा ले रखा है।

खम्बो के ऊपर लाइटें जल रही है और इसके किनारे समुद्र टाइप और एक साइड --

इस दृश्य के अंदर एक डेकोरेशन कर रखी है।